और बहुत सारे खूबसूरत फूल है।

और यहाँ पर एक पंखा लगा हुआ है उसकी तीन पंखी हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं मुझे कुछ नहीं दिख रहा।

इसमें काफी सारी गंदगी लगी हुई साफ कर रहे हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं एक बस है।

के जस्ट सामने बॉल रखी हुई है।

और यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और यहां पर न नली से पानी दे रहे हैं।

और यहां पर बैठने की सुविधा हैऔर एक ब्रिज लगा हुआ है।

यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक बल्ब का उजियारा लग रहा है।

एक ठेला लगा हुआ है।